किसी ने यहां पर फोटो --

यह फोटो बहोत सुंदर दिखाई दे रहा है।

यह फोटो सुजुकी सेल्स एंड सर्विस सेंटर का हैं।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

यह नदी बहोत बड़ी दिखाई दे रही है।

यहां पर बहोत सारे लोग भी हैं।

यह फोटो बहोत सुंदर दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहोत सारी दुकानें दिखाई दे रही है।

सौ एक सौ पच्चास रुपए की मिलती है।